घर दिख रहा है ऊपर यहाँ पे पैपांगी जाली मारी गई है।

यहाँ पे जॉगिंग मशीन रनिंग मशीन वेटलिफ्टिंग डंबल --

बड़ीीीी सी मच्छियों की दुकान दिख रही है।

बड़ाआआआ सा जिम दिख रहा है।

बड़ाआआआ सा तालाब दिख रहा है।

बड़ीीीी सी बिल्डिंग दिख रही है।

यहाँ पे बहुत सारे फूलों की लड़ान लगाए गए लाइट के फोकस है।

सामने यहाँ पे तीन लेडी और एक आदमी--